दिख रही है। बहोत सारा सामान दिख रहा है।

इसमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इसमे पेड़-पौधे दिख रहे है। घास दिख रही है।